सामने कुछ व्यक्ति गार्डन में खड़े हैं तथा एक महिला और पुरुष भी आ रहे हैं।

तथा एक साइकल भी दिखाई दे रही है साइकल के ऊपर एक पानी की बॉटल है।

इस पर टेंट लगाए गए हैं और एक सोफा भी रखा हुआ है।

साइड में कुछ गट्टे भी रखे हुए हैं और सामने भूस भी पड़ा है।

यह चित्र एक गार्डन का है इसमें बहोत बड़ा टेंट लगाया हुआ है।

तथा दो स्टूल भी दिखाई दे रहे हैं और काउंटर का कलर गुलाबी है।

स्कूटर के पास एक नीले कलर का ड्राम भी रखा है स्कूटर के पास दो बाइक भी खड़ी है।

दिया गया चित्र एक चाऊमीन बर्गर की दुकान कहां है इसमें एक व्यक्ति मोमोज तल रहा है और साइड में कढ़ाई के अंदर चाऊमीन भी रखी हुई है।

यह दृश्य एक लेंटर का है कुछ वर्कर यहां पर लेंटर डाल रहे हैं और कुछ लेंटर एक सारा अपना ठीक से कर रहे हैं।